एक बड़ा सा पेड़ इसमें है। आगे जाली - उली लगा हुआ है।

यह एक जंगल का फोटो है यहाँ बहुत सारे पेड़ -पोधे है सब का कलर हरा है ।.

उम्म मार्बल जो है ब्लैक कलर का पुतला वाइट कलर का --

यह जहाँ जगह है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है एक आदमी है जो तगाड़ में मसाला उठाए हुआ है ।

नाव का कलर बहुत अच्छा है अगल-बगल में बहुत पहाड़ भी है।

एक मंदिर का फोटो है जहाँ पे एक औरत बैठी हुई है मंदिर का पीलर जो है पीला कलर का है मंदिर में और सब --

गाड़ी का सर्विस सेंटर है जिसका नाम है बाइक जोन वर्कशॉप यहाँ बाइक का काम होता है।